आसमान दिख रहा है। पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

इसमे बाल्टी दिख रही है और सारे फल दिख रहे --

इसमें सोफा दिख रहा है। बहुत सारी फोटो दिख रहे हैं। कैमरा दिख रहा --